हर तरीका का जिम है वहां पे बहुत सारे लड़का लोग है जो जिम कर एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ--

तीन लड़का है और दो लड़की गुड्डे में लगता है सब बल्ले बल्ले डांस कर रहा है और ये है--

ढाबा है मतलब ढाबा है ढाबा में सब खाने पीने का सामान रहता है और--

ये एक चर्च नहीं ये घर टाइप घर है।

और ये योगा का मैट रखा हुआ है यहां पे--

और एकदम अभी तो कोई है नहीं साफ सुथरा एकदम है।

ये सब मिलेगा और यहां पे पेट शॉप है मतलब ये सब समान यहा से मिलेगा।

मट्टी भी खूब सारा ऊपर में आया हुआ है ये मट्टी तो बहुत अच्छा रहता है यहां कुछ आदमी एक आदमी खड़ा है दो चार बच्चे भी खड़े है।

खेल भी सकते हैं और यहां कुछ लोग भी दिख रहे हैं जो वॉक कर रहे हैं ये छोटा छोटा छोटा छोटा पौधा भी है।

और इसमें लड़की भी दिख रही है कुछ कुछ --

ये एक होटल टाइप का लग रहा है यहां चारो

अलग-अलग प्रकार का है स्टैचू है।